कुछ खड़े है और उसके आगे मुझे पानी-पानी नजर आ रहा है| यहाँ बहोत ठंड है| सब ने गर्म कपड़े पहने हैं| ये बहोत ही अच्छा मौसम हैं।

मगर मैं यहाँ नही जाऊंगा। ये बहुत ही पुरानी लग रही है। मुझे नई चीजो का शौक है इसीलिए अगर कुछ पेसे दो तो पहुँच जाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात कही है मैंने।

ये बारिस का मौसम है यहां पर सड़क पर काफी गड्डे है और यहां पानी भी भड़ा भरा है यहां पर एक पेड़ भी है और खंबे भी यहां पर बोहोत ही अच्छा मौसम है आसमान भी--